ये एक फोटो दिखा रखी है और ये कोई पावरहाउस वगैरह की फोटो है।

और ये एक झाड़ू भी है जो अ दीवार पे ए--